उसमें सामान लद रहा है और ऊपर पाइप भी लगे है।

और यहां पर एक कैमरा भी लगा है।

यह एक डांस कंपटीशन हो रहा है।

यह एक हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल में तीन आदमी खड़े हैं।

और दो तीन बेड भी पड़े हैं और लाइटें भी लगी हुई हैं।

एक दुकान पर लिखा एक दुकान पर पोस्टर लगा है।

और पीछे लाइन भी है और खंभे भी खड़े हैं।

यह एक फुलवारियों की दुकान है।

और पर्दे भी लगे हुए है और कुछ लाइटे भी लगी हैं।

यह एक डॉक्टर की दुकान है।

यह ओ एक ऑफिस है जिसमे दो तीन कुर्सियां भी हैं।

और कुछ समोसे भी हैं और दो तीन आदमी भी हैं।

इसमें बोहोत सारे कपड़े हैं। एक सूट भी रखा हुआ है।

झरना चल रहा है पीछे पेड़ पौधे भी हैं।